दुकान के उपर नामा जानता डायरी है और यहा बहोत सारे लोग जमा हुए है और यहा हम गाड़िया देख सकते है।

यहा हरे भरे छोटे घास है पानि है और यहा घर भी दिख रहा है।

यहा एक छोटी सडक नजर आ रही है बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बड़े बड़े पेड़ है।

और छोटे घास है और यहा पे आसमान है।

ये बड़ा सा छत्त है यहा लोग काम क्र रहे है हाथ में हथोडा पकड़े है यहा पे बहोत सारे लकडिया है और--

ये एक बड़ा सा बिच है और सूरज डूब रहा है और यहा पे बिच में हम छोटे छोटे हरे घास और बड पेड़--

बसेस है ओटो है और यहा सडक पे हम गाड़िया देख सकते है।

यहा दुकान दिखाई दे रहा है और यहा पे हम बहोत सारे अलग अलग चीजे--

यहा पर हम पाइप के बण्डलस देख सकते है।

और येलो कलर में है और यहा पे हम फेन भी देख सकते है और यहा पे एक कुड्सी है और यहा पे टेबल भी है।

ये एक रेस्टोरेंट है इसका नाम केपाप सेरा--

और यहा पे बहोत सारे छोटे छोटे पॉट्स और हरे पेड़ है और यहा पे बहोत सारे--

और हम यहा पे कुछ लोगो को देखते है।

यहा हम बहोत सारे टीचर स्टूडेंट्स और सर्स को देखते है यहा पर छोटी बच्चिया है।

छोटी घास है और यहा पे बड़े बड़े पेड़ भी है।

यहां एक बगीचा दिखाई दे रहा हैं बहोत बड़े बड़े हरे पेड़ हैं।

और यहा एक घर भी है और यहा एक आदमी चल रहा है।

यहा पे एक आदमी को देखते है।

नहोत सारा चिकन कट कर रहा है।

यहां बहोत सारी बॉक्सेस हैं बॉक्सेस के अंदर हम अलग अलग कलर के पेंट्स देख सकते हैं और यहां पे--

ग्रील का गेट देखने है और कुछ लोग अंदर जा रहे है और यहा पे करंट का खम्भा है और यहा पे एक कार है।

और यहा टेबल है कुड्सी है।

और यहा कूलर भी है और यहा पर हम टी_वी भी देख सकते है और यहा पे प्रिंटर मशीन है और काले रंग का डोर भी है।

बहोत बड़ा सा करंट का खम्भा देख सकते है और वायर है।

ये पत्थर से बनी हुई एनत्रल्स की दुकान है यहा पर हमे बड़ी सी--

यहा पर हम निचे छीटे घास भी देख सकते है।

यहा पे बहोत सारा पानी है बड़े बड़े पत्थर है हरे भरे छोटे पेड़ है छोटे--

ये एक छोटा गेरिज़ है और यहा पे बोर्ड पे लिखा है समलेश्वरी--

ओटो गेरिज और यहा पे तिन का सर्ट है यहा पे ब्लू शटर है और छोटे घास है बड़े बड़े पेड़ है।

हम बहोत बड़े बड़े हरे पेड़ो को देख सकते है और यहा पे घास भी है।